संध्या आरती हो रही है.

काफी बेहतरीन किताब भी होगा इस दुकान में.

इसमें काफी सुंदर पिल्लर भी लग रहा है फूल पत्ती भी है.

यह कोई पुरानी किला लग रही है.

यह स्सरकार द्वारा प्राप्त की गई हे.

टेंपो थ्री चक्का सिखने के लिए भी है.

सामने एक दीवार घड़ी है और एक फैन भी लगा हुआ है.

इसमें एक भी आदमी नहीं है।

मनतशा मोटर्स है टाटा ऑटोमोबाइल्स गैरेज है।

में एक भी कस्टमर या दुकानदार भी नहीं दिख रहे हे.

सोनू स्वीट्स है जिसमें नास्ते के लिए सामान उयलब्ध है.

शादी विवाह के लिए फंक्शन है ये काफी सजावट अच्छी लग रही है।

गार्ड साहब भी बैठे हुए हैं.

दुकानदार वाले भैया भी है फेवीकिक है और मसाले भी है.

ये पुस्तक की दुकान हैं इसमें इस्पोर्ट का सामान भी हैं.

अह कैरम बोर्ड है रखा हुआ कस्टमर भी है दुकान भी है.

बोर्ड है जिसमें लाइट जल रही है.

यह बायपास रोड है.

एक ऑटो आगे जा रही है पीछे से बाइक पे जा रहे है दो लोग लेडीज एक जेंट्स